क्या यार ये तो गुरु है और ये चर्च के गुरु हैं और यहां तो ऐसा लगता है जैसे कोई फंक्शन चल रहा हो।

और ये देखो इन्होंने सजावट कितनी अच्छी करा रखी है भाई।

कोई गेम खेल रही हूं और ये देखो इन्होंने अपने सब ने निगाह नीचे को कर रखी है।

और यहां तो अधिकतर मैंने देखा है यहां सरकारी लोग आते हैं और मीटिंगें भी होती हैं इस पार्क में --

देखो ये काला मंदिर है शायद एक मूर्ति है इसमें जो कि काफी सुंदर लग रही है और ये कोई --

और काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पे जिम करने।

और इस बस में ए.सी. भी है लगी हुई।

बहुत सावधानी से चलना चाहिए फिर चोट बोट लग जाती तो कहते हैं लोग --

और ज्यादा महंगी कॉफी नहीं देता वे. --

देखो यार इस जंगल में कितने सारे जानवर रहते होंगे।

और कितने सारे खेत हैं। हर खेत में अलग-अलग प्रकार की खेती हुई हुई है।

भाई देखो ये पार्क की एंट्री यहां कितनी अच्छी होती है और ये बहुत अच्छा पार्क है।

और इसकी कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है।

अब देखते हैं कौन जीतता है इस रेस में --

वहां काफी सारी फूल वगैरह भी हैं जो कि यहां कार पार्क करके --

बोलेरो गाड़ी भी खड़ी है और काफी अच्छा रास्ता है।

जैसे कि कुरकुरे और पीने के लिए पेप्सी या पानी --

ए भाई ये तो मछलियां है।

और सारे गांव के लोक भाग हैं देखो यहां पे --

और बहुत अच्छा तेल देते हैं ये डीजल पेट्रोल --